यह एक बड़े से क्लासरूम की पिक्चर है।

कुछ व्यक्ति दुकान में खड़े हुए हैं पास में एक घर भी बना हुआ है।

ये एक भारत पेट्रोल पंप की पिक्चर है पेट्रोल पंप पर कई सारे लड़के खड़े हैं।

ये एक बड़े से स्टूडियो की पिक्चर है स्टूडियो पे बहुत सारे फोटो लगे हैं।